हेलो रूबी के स्पोकन ट्यूटोरियल में स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
रूबी क्या है
विशेषताएँ रूबीजेम्स और रूबी पर सहायता
संस्थापन रूबी कोड रन करना
कमेंट करना
पट्स और प्रिंट में अन्तर
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1204 रूबी 193 का उपयोग कर रहे हैं
ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है
आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करने का ज्ञान होना ज़रूरी है
अब मैं समझाऊँगी कि रूबी क्या है
रूबी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषांतरित लेखन की भाषा है
यह सक्रिय मुक्त स्रोत प्रोग्रामिंग भाषा है
यह एक आकर्षक रचनाक्रम है जिसे आसानी से लिख पढ़ सकते हैं
अब रूबी की कुछ विशेषतायें देखते हैं
रूबी काफी वहनीय है
रूबी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है
स्मॉलतल्क बेसिक या पाइथॉन की तरह रूबी में वेरिएबल्स का डाटाटाइप नहीं होता है
यह स्वचालित मेमोरी प्रबंधन का समर्थन करता है
रूबी एक मुक्त प्रारूप भाषा है
आप अपना प्रोग्राम किसी भी लाइन या कॉलम से लिख सकते हैं
रूबी इंटरनेट और इंट्रा नेट अनुप्रयोगों के विकास में उपयोग होता है
रूबीजेम्स रूबी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है
रूबीजेम्स रूबी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए पैकेज मैनेजर है
यह रूबी प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज के वितरण में मान्य प्रारूप देता है
आप अपने जीईएमएस बना और प्रकाशित कर सकते है
रूबीजेम्स की ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए लिंक पर जाएँ
रूबी की ज्यादा जानकारी के लिए आप दर्शाए लिंक पर जा सकते हैं
आप उबंटु सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके रूबी को संस्थापित कर सकते हैं
उबंटु सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर उबंटु लिनक्स ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें
रूबी संस्थापित करने के दूसरे तरीके इस स्लाइड में दर्शाए हैं
रूबी कोड को तीन तरह से निष्पादित कर सकते हैं
कमांड लाइन इंटरेक्टिव रूबी फाइल की तरह
हम निष्पादन के हर तरीके को देखेंगे
सबसे पहले देखते हैं कमांड लाइन से हेलो वर्ल्ड कोड को कैसे निष्पादित करें
एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
कमांड टाइप करें
रूबी स्पेस हाइफेन ई स्पेस सिंगल कोट्स में पट्स स्पेस फिर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाएँ
हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिलता है
टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए पट्स कमांड का उपयोग होता है
हाइफेन ई फ्लैग केवल सिंगल लाइन कोड को निष्पादित करता है
मल्टीपल हाइफेन ई फ्लैग्स मल्टीपल लाइन कमांड्स का निष्पादन कर सकता है
इसका अभ्यास करें
अब पिछली कमांड के लिए अप एरो की को दबाएं और टाइप करें स्पेस हाइपेन ई स्पेस सिंगल कोट्स में पट्स स्पेस 12 और एंटर दबाएँ
हेलो वर्ल्ड और 3 आउटपुट आता है
अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं
अब हम इंटरेक्टिव रूबी के बारे में सीखेंगे
इंटरेक्टिव रूबी रूबी कमांड को तुरंत निष्पादित करता है
आप रूबी स्टेटमेंट्स को रन करके उसका आउटपुट और अन्य वेल्यूस देख सकते हैं
रूबी के पुराने वर्जन के लिए आईआरबी अलग से संस्थापित करें
अब रूबी कोड को आईआरबी से निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ
टाइप आईआरबी और एंटर दबाएँ
इंटरेक्टिव रूबी आरम्भ के लिए टाइप करें पट्स स्पेस डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाएँ
हेलो वर्ल्ड आउटपुट आता है
और रिटर्न वेल्यू निल आता है
आईआरबी से बाहर आने के लिए टाइप करें एक्सिट और एंटर दबाएँ
आप रूबी प्रोग्राम फाइल से भी रन कर सकते हैं
कोड लिखने के लिए अपने चयन का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर रही हूँ
गेडिट टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
अब टाइप करें पट्स स्पेस डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल लाइन या ब्लॉक कमेंट्स को कैसे जोड़ें
पट्स कमांड से पहले
टाइप करें इक्वल टो बेगिन और एंटर दबाएँ
इक्वल टो बेगिन कमेंट शुरू करने के लिए उपयोगी है
जो कमेंट्स आप जोड़ना चाहें टाइप करें
मैं टाइप करुँगी माय फर्स्ट रूबी प्रोग्राम और एंटर दबाएँ
यह कोड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा
एंटर दबाएँ
अब इक्वल टो इंड टाइप करें
मल्टीपल लाइन कमेंट्स की समाप्ति के लिए इक्वल टो इंड उपयोगी है
प्रोग्राम की गति को समझाने के लिए कमेंट्स उपयोगी हैं
यह प्रलेखीकरण के लिए उपयोगी है
अब सेव बटन क्लिक करके फाइल सेव करें
फाइल को लगातार सेव करना एक अच्छी आदत है
आपके स्क्रीन पर सेव एएस डायलॉग बॉक्स दिखता है
फाइल सेव करने की जगह चुनें
डेस्कटॉप पर मैं रूबीप्रोग्राम नामक एक फोल्डर बनाऊँगी
हम फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे
टेक्स्ट बॉक्स नामे में जो नाम आप चाहते हैं टाइप करें
मैं टाइप करुँगी helloआरबी रूबी फाइल को डॉट आरबी एक्सटेंशन दिया है
फिर फाइल सेव करने के लिए सेव बटन दबाएँ
अतः अब फाइल सेव हो गई है
कोड निष्पादन के लिए टर्मिनल पर जाएँ
सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करें
निश्चित करें कि आप उस डाइरेक्टरी में हैं जहाँ रूबी फाइल है
याद रहे कि हम होम डाइरेक्टरी में हैं
हमें सब डाइरेक्टरी रूबीप्रोग्राम में जाना है
ऐसा करने के लिए टाइप करें सीडी स्पेस desktopरूबीप्रोग्राम और एंटर दबाएँ
फाइल का निष्पादन करें
टाइप रूबी स्पेस हेलो डॉट आरबी और एंटर दबाएँ
हमें हेलोवर्ल्ड आउटपुट मिलता है
अब मैं पट्स और प्रिंट स्टेटमेंट में अंतर दर्शाती हूँ
आईआरबी प्रयोग करके इसको समझेंगे
इससे पहले हमें वापस होम डाइरेक्टरी में जाना है
ऐसा करने के लिए टाइप सीडी और एंटर दबाएँ
अब इंटरेक्टिव रूबी आरम्भ करने के लिए टाइप आईआरबी और एंटर दबाएँ
टाइप करें पट्स स्पेस डबल कोट्स में हेलो कॉमा डबल कोट्स में वर्ल्ड यहाँ कॉमा दो पट्स कमांड को जोड़ता है
अब एंटर दबाएं
हमें हेलो वर्ल्ड मिलता है लेकिन अलग लाइन्स में
अब प्रिंट के साथ इसका अभ्यास करें
पिछली कमांड पर जाने के लिए अप एरो की दबाएँ
पट्स को प्रिंट में बदले और एंटर दबाएँ
हमें आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिलता है लेकिन उसी लाइन पर
कीवर्ड पट्स आउटपुट के अंत में एक नयी लाइन जोड़ता है
कीवर्ड प्रिंट ऐसा नहीं करता
कीवर्ड प्रिंट वही आउटपुट देता है जो हमने दिया है
इसी के साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रूबी के बारे में संस्थापन रूबी कोड का निष्पादन
एक से ज्यादा कमेंट जोड़ना begin और end पट्स और प्रिंट में अंतर
नियत कार्य के रूप में अपने नाम और आयु प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखें
हमने इस ट्यूटोरियल में भिन्न लाइन कमेंट्स उपयोग किये
सिंगल लाइन कमेंट देकर देखें
निम्न लिंक पर दिए गए वीडियो को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल का सारांश है
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियलस का उपयोग करके कार्यशाला चलाती है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाणपत्र देती हैं
ज्यादा जानकारी के लिए contactspoken tutorialorg को लिखें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
इस मिशन पर ज्यादा जानकारी निम्न लिंक पर है spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
आईआईटी मुंबई से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद